जैसे कि गिटार ढोलक मंजीरा ये सब सामान इस दुकान के अंदर रखा हुआ है यहां--

की दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी का मंडप तैयार कर के रखा हुआ है।

कत्थक वाला गेटअप ले रखा है गा सब के ड्रेस का कलर ब्लू और रेड है सब ने अपनी जो जो--

पार्लर की फोटो है यहां पे जॉकी करके कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है और--

सामने एयरटेल की सिम वालों का एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रा है एयरटेल वालों का जो बोर्ड है वो वाइट और रेड कलर का आएगा व्हाइट कलर से --

ते हुए पोज में दिखाई दे रही है सबने शॉर्ट्स ड्रेस पहन रखी है और ये सभी--

उसके रूम के डेकोरेशन के बहार ही एक बेबी का पोस्टर भी लगा --

मुझे सामने एक जिम जैसा या फिर ताइक्वांडो सिखाने वाले रूम दिखाई दे रहा है यहां पे कोई और व्य--

टी शर्ट पेहनी है और नीचे चड्ढा पहना हुआ है और वो पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे दोनों--

आगे लिखा हुआ है डॉक्टर एस_के शर्मा और यहाँ पर उनकी जो दुकान है उसमे शटर गिरा हुआ है उसके बहार एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो--

शायद यह गुरुद्वारा या मस्जिद है जहाँ लोग बैठे है और वो सभी--

आदमी है जो भी यहां पर बैठे हैं सभी ने अपने सर के ऊपर एक टोपी लगा रख--

सामने एक औरत दिखाई दे रही है जो की पता नहीं क्या कर रही है लेकिन उसके आसपास में काफी ज्यादा सामान दिखाई दे रहा है जो की रखा हुआ है।

ऊपर की ओर जा कर पीछे साईड की ओर मुड़ जाती है ये किसी जरूर स्टेशन की फोटो है और ये स्टेशन काफी बड़ा --

काफी सारा समान जेसे की ग्राउंड फ्लोर के सूर्यनगर और यहाँ पर काफी --

इसारा बहादुर गढ़ झांजर यह सब लिख के रखा हुआ है अपने बोर्ड --

मुझे सामने ट्रक खड़ी हुयी दिखाई दे रही है ट्रक रेड कलर की है और इसमें काफी ज्यादा सामान भरा हुआ है।

और ये ट्रक को ढक के ले जाया जा रहा है इसमें जो सामान रख रखा हुआ है वो क्या रखा है पता न--

मुझे सामने भगवान जी की काफी सारी मूर्तियाँ रखी हुयी दिखाई दे रही है यहाँ अलग-अलग भगवान जी की अलग-अलग मूर्तियाँ--

रास्ता भी काफी बड़ा है जो कि दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो पेड़ है वो --

लिखा हुआ है। इसके के ऊपर अस्पताल और यहां पर जो एक हॉस्पिटल का गेट है वह ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसके --

सामने कुछ लेबर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे सभी किसी घर का निर्माण --

काम चल रहा और उन्होंने सभी लोगों ने मिलके आपस में काम अच्छे से ये कर रहे हैं और सबका काम बटा--

सामने एक रूम जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी घर के वीडियो है और ये काफी बड़ा हाउस है जो--

सजाया गया है यहाँ पे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है बस ये जो रूम है वो वाइट कलर से पुता हुआ है --

जो सामने हीरो की गाड़ी दिखाई दे रही है यहाँ शायद हीरो की गाड़ी का फाइनेंस हो रहा है यहाँ पे काफी सारी हीरो की गाड़ी ख-रखी हुई है जिस--

ज्यादा लोग होंगे और यहाँ काफी भीड़-भाड वाला एरिया है ये दखाई दे रहा है यहाँ पे एक आदमी की --

ये यहाँ पे फैन लगा हुआ है और यहाँ पे काउंटर भी है जहाँ पर अभी फिलहाल तो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ नही दिखाई दे रहा--

मुझे सामने एक पानी जैसा दिखाई दे रहा है पानी से बाहर तीन कछुए दिखाई दे रहे हैं कछुए पानी से बाहर चल रहे--